बहोत से अलग-अलग तरह के फूल भी खिले हुए हैं।

डेक्स पर बच्चों का सामान बॉक्स पेंसिल इरेजर चार्ट पेपर रखा हुआ दिख रहा --

जिसमें छोटे छोटे पौधे लगे हैं और पिंक कलर के फूल भी खेले हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें सामने की ओर एक काउंटर रखा हुआ है।

इस पिक्चर में बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

पीछे की ओर एक घर बना है जिसमें बहोत सी खिड़की दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

आगे की ओर बहुत बड़ा सा मैदान छोटा हुआ है।

आदमी के पीछे एक बाल्टी रखी हुई दिखाई दे रही है।

जिसमें बहोत से काउंटर बने हुए हैं सभी काउंटर में डिजाइन बनी हुई है।

ऊपर की ओर स्क्रीन बनी हुई है जिस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर ऊपर ऑरेंज कलर से कैपिटल लेटर में यमाहा लिखा हुआ है।

छोटी छोटी घास लगी हुई है और कुछ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

जिनके बाहर खूब बक्से और अटैची रखी हुई दिखायी दे रही है आस पास रेलिंग बनी है।

दो दुकानें बंद हैं एक ब्लैक कलर का बैनर लगा हुआ है।